यहाँ पर फ्रेम नजर आ रहे है ऊपर लाइट नजर आ रही है ए_सी नजर आ रही है फैन नजर आ रहा --

यहाँ पर एक बड़े से में बिल्डिंग है।

यहाँ पर जिम के फिटनेस सेकंड में यहाँ पे--

यहाँ स्कूल नजर आ रहे हैं कारखानें पे कई सारे बाइक रखे हुए है बाइक पर एक आदमी बैठा --

यहाँ पे फ्रेम नजर आ रहा है स्विच नजर आ रहा है यहाँ पे कैमरा नजर आ रहा है।

यहाँ पे पॉट्स रखे हुए नजर आ रहे हैं।

दरख्त नज़र आ रहे हैं जंगली घास नज़र आ रही है पीछे कई सारे लोग नज़र आ रहे हैं।

कॉफी शॉप नजर आ रहा है कॉफी शॉप में यहाँ पे तीन जेन्टस बैठे हुए हैं।

और यहाँ पीछे पानी का जहाज नजर आ रहा है कार नजर आ रही है पैनर लगा हुआ है।

हैं यहाँ पे मिरर नजर आ रहा है।

यहाँ पर हाईवे नजर आ रहा है कार या बाइक आते हुए जाते हुए नजर आ--

कार रूकी हुई है हरिद्वार जा रहे है यहाँ वेटिंग पाइंट नज़र आ रहा है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है बिल्डिंग नज़र आ --

यहाँ पर कपड़ों की शॉप नजर आ रही है।

यहाँ पर सिटी सेंटर सेलॉन लिखा हुआ है गोपाल--

सेलॉन ए_सी सेलॉन लिखा हुआ है पिछ है एक आदमी ठेहरा हु --

ये बिल्डिंग नजर आ रही है डोर नजर आ रही है विंडो नजर आ रही है।

यहाँ पर एक सेलॉन नजर आ रहा है यहाँ पे--

यहाँ पे स्विच बॉक्स नजर आ रहा है।

में यहाँ पे एक जीप रूकी हुई नज़र आ रही है।

यहांँ पे थर्ड भगत-भगत--

वन फोर थ्री लिखा हुआ है सी --

यहाँ पर आर एम एल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पर एक मोर है मोर को कई सारे पंख नजर आ रहे हैं।